--इसमें बैठ के मूवी देखा जाता है।

यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग रंगों में ब स्कूटी रखा गया है।